बहुत सारी जंगली जानवरों की मूर्तियां बनाई हुई है जो एकदम असली लगती है।

दी गई तस्वीर कॉस्मेटिक्स दुकान की है।

छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका अभिनंदन करती है।

यहां रेल पटरियों पर खड़ी हुई है आस पास यात्री --

दी गई तस्वीरें एक होटल की हैं यहां देम हंस करके --

और छोटी आइसक्रीम कप भी अवेलेबल है यहां दीवारों पर एल_ई_डी लाइट लगी हुई है।